हेलो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहोत ही बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है एंड आप उसके पीछे भी देख सकते हैं दो बिल्डिंग और बनी हुई हैं एंड ये दिखने में --

एंड आप देख सकते है चर्च के बाहर एक लड़का है एंड चर्च के अंदर एक लड़का एंड लड़की है जो आ रहे हैं एंड चर्च के बाहर आप देख सकते हैं एक वाइट कलर की कार भी एंड पेड़-पौधे --